आगे बहुत सारे पेड़ दूर-दूर तक पेड़ दिख रहे है बहुत ही बड़े--

और पत्थर भी दिखाई दे रहे है आगे बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है जंगल काफी बड़ा है और ऊपर से लाइट के तार--

बहुत ही ट्रैफिक लगा हुआ है और पर बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रही है सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ इस्टेज बना हुआ है इस्टेज पर एक लड़की डांस कर रही है बहुत सारी लाल व्हाइट कलर की--